सामने में बहुत सारा बोर्ड भी लगाया हुआ है।

दूर की ओर बिल्डिंग भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रही है।

सामने में कई सारे चोको चिप्स कुकीज रखा हुआ हैं।

और बहुत सारे जूस भी रखा हुआ है।

कोने कई सारे गर्दन की बॉक्स पर रखा हुआ है।

और कई सारे इलेक्ट्रिक पोल भी हैं।

सामने में एक ट्यूबलाइट भी है।

टेबल के ऊपर कई सारे टिश्यू पेपर भी रखा हुआ है।

जो कि ब्राउन कलर की से बनाया हुआ है।

सामने में पानी की बोतल भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक हॉल दिखाई दे रही है।

मुझे इस तस्वीर मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग की दीवारों पर वाइट और येलो से पेंट किया गया है।

सामने में एक सड़क भी है।

कइ सारे सारे पेड़ पौधे भी है।

कई सारे पोस्टर भी लगाया हुआ है।

सामने मैं बहुत सारा आदमी भी खड़े हैं।

टेबल के ऊपर कई सारे टिशू पेपर रखा हुआ है।

और कई सारे बोतल भी रखे हैं।

टेबल के ऊपर एक पानी बोतल भी रखा हुआ है सामने में तीन आदमी बैठा हुआ है।

जोकि येलो कलर और ग्रीन कलर से हैं।

सामने में बहुत सारे पेपर भी रखा हुआ है।

सामने में कई सारे वाशिंग मशीन भी रखा हुआ है।

के हाथ में एक चाय की कप भी है।

इस पर कई सारे पेड़ पौधे भी हैं।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे वाशिंग मशीन दिखाई दे रही है।

सारे कार्टून की बॉक्स भी रखा हुआ है।

सामने में कई सारे अलमीरा भी हैं।

दीवार में कई सारे फोटो चिपकाए हुए हैं।